यह एक गार्डन का दृश्य है जहां तरह तरह के पौधे दिखाई दे रे है और इस गार्डन में फूल भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जहां पे बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है।

जहा पे दो वर्कर काम कर रहे काम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पेंट कर रहे हैं।

दुकान का मालिक भी है जो एक हाथ में पेपर लिए हुए--